उसके आगे बहुत सारे टीन आगे पड़ी हुई है और खुदरे खुदरे डोर भी घुसा लगा गड्ढे वढे भी खुद उदे दिखायी पड़ रहे है और या खुद भी रहे हैं।

ये स्कूल का अ म वो क्लास जैसा लग रहा है इसमें लड़कियों को बता रही हैं। कुछ लड़कियां बुनाई भी कर रही हैं। कुछ सीख भी बना रही है। वो लड़कियाँ क कलर भी कर रही हैं। कुछ लड़कियाँ बैठी इधर से उधर दिख रही हैं।

'' स्कूल में कोई फंक्शन नहीं होता पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी मैम ऐम भी सारी बहोत बैठी हैं प्रैक्टिकल करवा रही हैं। बच्चों को बता भी रही हैं बहोत सारी कुर्सियाँ भी पड़ी हैं बहोत सारी --''

और इसकी दाहनी साइड मे भी टेबल रखी है। टेबल पर कुछ मशीन जैसी नजर आ रही है कुछ कपड़े साफ करने के --

मकान लग रहा है इस मकान में बहुत सारे झंडे ओंडे दिखाई पड़ रहे हैं उस तरफ भी बहुत सारे मकान झंड मकान दिखाई पड़ रहे हैं जो सफ़ेद पुट्टी से पोते हुए गए हैं और टंकीयाँ भी बहुत दिखाई पड़ रही हैं पेड़ भी बहुत दिखाई पड़ रहे हैं।

हॉस्पिटल लग रहा है। हॉस्पिटल के आगे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और एक पोस्टर पर स्वागतम लिखा हुआ है।

ये किसी दुकान लग रही है। इस दुकान के आगे जो पोस्टर लगा है स्पेशल चार्ट लिखा हुआ है और इस मे आगे जो है कांच की है पर खुला है ऊपर की ओर बनी है उसपे भी खुला है।

यह गेस्ट हाउस लग रहा है इस गेस्ट हॉउस में जो जायमाला पड़ता है उसके वहाँ सोफा भी रखा है उस टेंट के ऊपर उसके पीछे बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है।

और आगे मेटल लाल और ग्रीन कलर का गेट फाटक खुला हुआ है। कुर्सियां इस साइड में पड़ी हैं कुछ कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं एक बूढ़ा है उन्होंने धोती कुर्ता भी पहना है इस तरफ भी बोहत सारे लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।

नजर आ रही है।

कहीं की क्लासरूम लग रहा है इस क्लासरूम में बहुत सी डेस्क रखी हुई हैं कुछ वो बैठने वाली कुछ पढ़ने वाली पीछे की तरफ दो खिड़कियाँ रखी हैंलगी हुई हैं ।

यह जिम लग रही हैं| इस जिम में बहुत सारी मशीनें रखी हुईं है |

और ये इनकी दुकान लग रही है इस दुकान में जो चिड़िया बना बनाई गयी है फोम की चिड़िया लग रही है और एक खंबे से पाइप पे दी गई है।